यहाँ इमेज मुझे एक फिश मार्केट की लग रही है यहाँ पर बहोत सारी छोटी बडी फिश रखी हुई है।-